जगह खाली है और बॉउंड्री --

यह एक सैलून है जहाँ पे लोग का बाल कट रही है।

और उसके सैलून में एक चढ़ी हुई है।

रंग की ला-लाइनर की हुई है।